सामने में हमे देखने को मिल रहा है अंदर में हमे एक टेबल देखने को मिल रहा है हमे वहा पर बटिया देखने को --

वहां पे हमे छोटे छोटे पेड़ देखने को मिल रहे हैं पीछे में हमें--

बहुतसारे जंगल देखने को मिल रहे है ऊपर में हमे आसमान देखने को--

हमे यहाँ पर पानी देखने को मिल रहा है पानी का रंग पुरा काला है पानी में हमे --

फूल देखने को मिल रहे है ऊपर में हमे सूरज देखने को मिल रहा है साइड में हमे पानी देखने को मिल रहा है।

फुटबॉल वाला गोल कीपर देखने को मिल रहा है।

बहुतसारे लाइट देखने को मिल रहे है सामने भी हमे दो बड़े बड़े घर देखने को मिल रहे--

सोफा देखने को मिल रहा है सोफा पे मुझे--

तकिया रखा हुआ देखने को मिल रहा है तकिया मुझे --

मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा कुछ टेबल देखने को मिल रहा है टेबल के पीछे हमे एक बेंच देखने--

मोटरसायकल रंग हमें ब्राउन कलर का भूरा कलर का देखने को मिल रहा है हमे इसमें--

चाबी लगा हुआ हमे देखने को मिल रहा है सामने भी हमे एक स्कूटी देखने को मिल रहा है जो की ब्लू रंग --

टाइल्स देखने को मिल रहा है साईड में हमे एक --

पडदा देखने को मिल रहा है पड़दे के साईड में हमे एक डिब्बा देखने को मिल रहा है वही मुझे एक --

लाल रंग का बोरा देखने को मिल रहा है पीछे मुझे एक सोफा --

समुद्र देखने को मिल रहा है हमे ऊपर नीला आसमान देखने को मिल रहा है जो की जिसका रंग काला आसमान है।

मुझे यहाँ पर ईटसे बने हुए रोड देखने को मिल रहे है रोड पे हमे सामने में --

देखने को मिल रहा है साईड में बहुतसारे पेड़ देखने को मिल रहे है पेड़ के ऊपर हमे यहाँ --

देखने को मिल रहा है हमे पानी देखने को मिल रहा है जिसका रंग सफ़ेद है ऊपर में हमे पत्थर --

ये यहां पर एक मैदान देखने को मिल रहा है मैदान मुझे घास देखने को मिल रहा है।

होटल देखने को मिल रहा है सामने में हमे एक रिसेप्शन देखने को मिल रहा है वहा--

मुझे यहाँ पर एक पिंक कलर का मैट देखने को मिल रहा है वही पर मुझे एक आसमानी कलर का --

आयना देखने को मिल रहा है पीछे में हमे टेबल देखने को मिल रहा है साईड में हमे--

छोटा सा ढाला हुआ बाउंड्री देखने को मिल रहा है बाउंड्री के उपर--

मुझे यहाँ पर सामने में दो शेर देखने को मिल रहा है शेर का रंग पीला है उसके बगल में मुझे एक--

डेट देखने को मिल रहा है डेट का रंग पीला है उसके साईड में हमे मंदिर देखने को मिल रहा है मंदिर के अंदर हमे एक --

भगवान देखने को मिल रहे है ऊपर में हमे झंडा लगा हुआ दे--

कॅरम बोर्ड देखने को मिल रहा है कॅरम बोर्ड के बगल में हमे यहाँ पे--

टेम्पो के बगल मुझे यहाँ पे एक फोर व्हीलर देखने को मिल रहा है जिसका रंग काला है।

ये उधर मुझे एक मोटरसायकल देखने को मिल रहा है यहाँ पर मुझे कुछ लोग बैठने बैठे हुए दे--

मुझे यहाँ पर एक खुला मैदान को देखने को मिल रहा है खुला मैदान के बगल में मुझे यहाँ पर--

इसे क्रीम कलर से पेंट किया गया है निचे में मुझे बोहोत सारे मोटर सायकल देखने को मिल रहे है उ --

मिल रहा है जिसे क्रीम कलर से पेंट किया हुआ है।

एक स्टाफ देखने को मिल रहा है जिसके हाथ में दो रखा हुआ है खुर्ची पे उसने बैठा हुआ है।

ये यहाँ पर एक दुकान देखने को मिल रहा है दुकान के बाहर मुझे यहाँ पर रोड देखने को मिल रहा है दुकान के ऊपर हमें--

बोहोत सारे चप्पल देखने को मिल रहे है हमे वह पर एक --

टाइल्स देखने को मिल रहा है टाइल्स के बगल में मुझे यहाँ पर बैठने वाला--

खुर्ची देखने को मिल रहा है खुर्ची काले रंग से पेंट किया हुआ है खुर्ची के बगल में मुझे यहाँ--

प्यूरीफायर देखने को मिल रहा है साईड में मुझे मनी प्लांट्स --

मुझे यहाँ पर रोड देखने को मिल रहा है रोड के बगल में मुझे यहाँ पे--

फोर व्हीलर देखने को मिल रहा है जो की व्हाइट रंग का है यहाँ पे बोहोत सारे देखने--

फूल लगे हुए देखने को मिल रहे है साईड में मुझे यहाँ पर भगवान का घर देखने को मिल रहा है हमे यहाँ पे चप्पल देखने--

खुर्ची देखने को मिल रहा है खुर्ची हमे क्रीम कलर का ब्राउन कलर का देखने को मिल रहा है साईड में हमे पेड़ --

ये मुझे यहां पर ऊपर में एक आसू स्टील चेयर देखने तो मिल रहा है।

रेलिंग देखने को मिल रहा है इसके ऊपर व्हाइट कलर का पाइप लगा हुआ है हमे वह पर एक मोटरसायकल देखने को मिल--

मुझे यहाँ पे बोहोत सारे टोर्च लगे हुए देखने को मिल रहे है टोर्च पे मुझे यहाँ पे--

डस्टबिन देखने को मिल रहा है डस्टबिन के बगल में मुझे यहाँ --

हरा रंग से और पर्पल रंग से पेंट किया हुआ देखने को मिल रहा है हमे यहाँ।

बड़े बड़े रेलिंग देखने को मिल रहे है पिलर हमे हरे रंग से पेंट --

का फोटो बना हुआ देखने को मिल रहा है वही पे हमे एक--

मुझे यहाँ पे एक बाजार देखने को मिल रहा है बाजार में मुझे यहाँ पर--

बहुतसारे बैलून्स देखने को मिल रहे है मुझे यहाँ पे।

मोटरसायकल देखने को मिल रहा है साईड में मुझे सीडी देखने को मिल रहा है ऊपर अंदर में हमे लाइट देखने--